यह तस्वीर एक कृष्णा ट्रैवल की है।

कार्पेट पिछा है और उस-उसके ऊपर टेबल है।

इस कमरे में एक सोफा रखा हुआ साइड भी और उसमें कवर चढ़ाया हुआ है।

लिखा हुआ हैलोहे के दवाज के ऊपर लिखा हुआ है शांति नारायण गोटेश शेरी शिमला।

लगी हुई है दर्शन करने के भगवान के दर्शन करने के लोग अंदर जा रहे हैं।

का नाम इंद्र पुरुष तोप ढाबा इंद्र पुरुष तोप ढाबा है।

यह तस्वीर एक बिल्डिंग की है जो सड़क के दूसरी तरफ से खींची गई है।

एक लड़के ने पहाड़ों के बीचों-बीच तस्वीर खींची है।

यह तस्वीर एक पार्किंग की तस्वीर है जहाँं पर--

यह तस्वीर मछली मार्केट की है। जहां पर लोग--

यह तस्वीर न्यू हिमाचल बोट हाउस की है।

वाइट रंग का लिखा हुआ है।

बाथरूम का दरवाजा लगा हुआ है और नीचे फ--

टेंट लगाए हैं रेड रंग के और पर्दे लगाए हैं गोल्डन कलर के।

नीचे वाली बिल्डिंग में वाइट कलर का रंग है और ऊपर वाली बिल्डिंग में --